देखिए क्या है यहां पे यह पिक्चर में काम चल रहा है मजदूर काम कर रहे हैं गिट्टी भरी जा रही है और कई सारी रॉडे भी दिखाई दे रही हैं।

छोटे बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं और घास काफी दिख रही है पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं काफी हरा भरा नजारा दिख रहा है।

अंधेरा दिख रहा हैं और लाइटे भी नजर आ रही हैं।